बहुत ही अच्छा यहाँ पर तस्वीर दीखता है बहुत ही अच्छे से अच्छा फोटो को दिखाते हुए बहुत ही अच्छा तस्वीर और बहुत शानदार यहां तस्वीर गुफा उफ़ा का भी है और बहुत ही अच्छा दिखता होगा बहुत शानदार यहां पर--

महक रहा है बहुत शानदार से शानदार फोटो दिखता है और एक नंबर फोटो दिख रहा है बहुत ही अच्छा फोटो को दीखते हुए बहुत शानदार यहाँ पर--